परिकार्तिक वाली महिला श्री कृष्ण की भक्ति में लिन होके उनका व्रत करती है।

--और ठेला से अनाज ले आए है और मास्क भी लगाए टोपी भी लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं साइकिले भी रखी हुई है।